धरती लउकता। घर बा एगो। हे हाथ में मरदाना खड़ा भइल बा। गाड़ी बा।

पानी में पत्थल पर आदमी बैठल बा समुद्र में। आसमान बादर लउकता।